खूब बड़हन पारक बा। पर्कवा में छोटे छोटे पौ पेड़ बाने सब बड़े बड़े पेड़ बाने सब झुला लागल बा|

चारो और से तार गईल बा पूल गाड़ल बा मार भींड बा कपड़ा पसारल बाड़े सन। --